कुछ मोबाइल टावर भी दिख रहे यहां से--

ब्लू स्काई ब्लू कलर का पेंट किया हुआ है ऊपर का सीलिंग वाइट कलर का पेंट किया हुआ है कुछ कुर्सियां वहां पर रखी हुई है।

सामने व्हाइट दो व्हाइट बकेट है और पीछे हॉर्स राइडिंग आ का इक बोर्ड देख रहा है।

ये एक ब्रिज का पिक्चर दिख रहा है ओवर ब्रिज टाइप का जो अभी कंस्ट्रक्शन शायद इसका पूरा नहीं हुआ है कंस्ट्रक्शन हो रहा है।

पिछे स्टोर से छोटे छोटे से आ आस पास में--

ये एक स्टेट बैंक है जहां पर स्टेट बैंक है छोटासा आं ए_टी_एम ए_टी_एम है शायद और--

के लोग ए_टी_एम से पैसा निकालने के लिए लाइन पर कतार लगाके खड़े हैं कुछ बाइक्स खड़ी है कुछ ठेले आगे में खड़े हैं।

एक बच्ची या बच्ची बैठी हुई है।

एक रूम टाइप का है गोदाम टाइप का उसमें एक कार है सामने एक आटो है।

पिंक कलर का पीछे भी कुछ ट्रैक्टर है शायद--

यहां कुछ बसेस दिख रहे हैं। सामने में कुछ बसेस खरी है।

एक पिलर टाइप का कुछ बना हुआ है।

सी साइट वो उसका पिक्चर दिख रहा--

ये एक कॉम्प्लेक्स है बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है येलो कलर का बिल्डिंग है कुछ फ्लोर्स है यहां पर--